यह एक झील है झील एक पानी का ऐसा स्रोत है।

यह कोई मैन्यूफैक्चर की दुकान है जहाँ बाहर कुछ बच्चे खड़े हैं।

जहाँ कई सारी कारें लगी हुई हैं कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर कई तरह की फर्नीचर वाली वस्तुएं रखी हुई है।

जिस दुकान में बाहर में कई सारे लैंटर्न्स लगी हुई हैं एक दुकानदार खड़ा है।

प्रस्तुत चित्र भी मस्जिद का है जहां--

कुछ लोग बातें कर रहे हैं और कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं।

चित्र किसी भी दुकान के बाहर का है जहाँ--

प्रस्तुत चित्र किसी खेल के मैदान का है जहाँ पर कई विद्यार्थी खेल की--

तैयारी कर रहे हैं या पुश अप कर रहे हैं।

यहां पुरुषों के पहनने की चीजें बिक रही है और कुछ लोग खरीद रहे हैं।

प्रस्तुत चित्र किसी बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी की चित्र है जहाँ पर बहुत खूबसूरती से सूरत--

प्रस्तुत चित्र किसी स्टेडियम का है।

प्रस्तुत चित्र किसी रेस्टोरेंट का है जहां पर बहोत खूबसूरत--

प्रस्तुत चित्र किसी मकान के अंदर का चित्र है।

प्रस्तुत चित्र किसी बाहर मैकेनिक शॉप का है जहाँ--

योगा करने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए मशीनें रखी हुई हैं।

प्रस्तुत चित्र किशी शीशे के दुकान का चित्र है जहाँ कई--

यहाँ पिंक कलर की दीवारें बनी हुई हैं और कई सारी खाने-पीने की वस्तुएं भी हैं।

प्रस्तुत चित्र खेल के मैदान का है जहाँ कुछ लोग--

लोटे में शायद जल लेकर के रखा हुआ है शायद।

प्रस्तुत चित्र अ दर्शा रहा है वातावरण को बहुत ही खूबसूरत वातावरण है चमकीली धूप निकली हुई है।

कई तरह की रंग बिरंगी चीजें रखी हैं।

प्रस्तुत चित्र को देख के लग रहा है यह किसी मजदूर लोगों के रहने --

काम करने का काम करने की जगह है यहां कुछ मशीनें दिखाई दे रही और ईंटें--

कार दिखाए जा रहे हैं और दो गार कारें दिख रही हैं एक डस्टबिन दिख रहा है नीले रंग का।

काफी खूबसूरत नजारा है जो कि मिट्टी में उगे हुए हैं।

अ पत्थरों को काफी रंगीन कलरों से रंगा गया है और यह काफी आकर्षित आकर्षण लग रहा है।

दाढ़ी बना रहा है और वह व्यक्ति फोन पे किसी से बात कर --

प्रस्तुत चित्र किसी मॉल के बाहर का है जहां कई खूबसूरत राजस्थानी पुतले दिखाई दे रहे हैं।

प्रस्तुत चित्र किसी स्टेशनरी दुकान की चित्र है जहां पर लड़कियों के लिए काफी तरह की गुड़ियां--

प्रस्तुत चित्र एक जिम का चित्र है जो कि काफी खूबसूरती से सजा अ सजा हुआ है रंगबेरंगे बैलूस लगे हैं।

एक डॉक्टर मरीज को ठीक कर रहा है उसकी जांच कर रहा है।

प्रस्तुत चित्र एक योगा वाले स्थल का है जहां कई पुरुष--

ऊपर कमरे के ऊपर एक ए_सी दिखाई दे रहा है तो यह किसी गद्दे की दुकान की चित्र--

प्रस्तुत चित्र किसी कार्यालय का है जहां कई महिलाएं लैपटॉप पर कंप्यूटर पर कुछ काम करते हुए दिखाई दे रही हैं।

कुछ कामें है और काफी सारे कंप्यूटर है यहां इस जगह पर--